बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा दिल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ बहुत सारी कार और कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

उसके बाहर कुछ फुग्गे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।

बाहर हरी नेट में दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जो कोईफिजा क्लब में है।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी सर पे गमछा बांध कर बैठा है।

फोटो ए_ पी_ जी_ अब्दुल कलाम की है।

यहां पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।

यहाँ पर हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लकड़ी का ब्रिज दिखाई दे रहा है।

पिलर पे कराठे के पोजीशन के पोज बने हुए हैं।

यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं।

यहाँ पर हमें एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके साइड से पानी बहता हुआ जा रहा है।

सभी कैबिन के सामने काले रंग की कुर्सी है।

इस तस्वीर में हमें एक लकड़ी का ढांचा नजर आ रहा है जिसको घर का शेप दिया गया है और उसमें पहिए लगे हैं।

जंगल में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया है।

और हमें यहाँ पर एक झाड़ू जैसा दिखाई दे रहा है।

सभी टेबल पर जग और गिलास रखे गए हैं यहां एक काउंटर बना हुआ है जोकि लकड़ी का है और एक फ्रीज़ रखी है।